पानी दिखाई दे रहा है और उधर म पेड़ भी दिखाई दे रहे है नीला आसमान भी दिखाई से रहा है।

एलीफैंट है उस पर एक लड़का बैठा दिखाई दे रहा है और वहा पे वाटर फाउंटेन भी दिखाई दे रहे है।

एक टेबल है टेबल पर एक फ़ाइल दिखाई दे रही है। एक बॉटल भी वहाँ पे रखकर रखकर है और सभिने मास्क पहने है।

ये इस चित्र मे भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है वहा पे अ सामने फूल दिखाई दे रहे है।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

बड़े भी पौधे दिखाई दे रहे हैं छोटे भी पौधे दिखाई दे रहे हैं हरी घास दिखाई दे रही है वहां पे धुआँ निकलते हुए दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

चित्र मे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है हरी घास दिखाई दे रही है वहा पे पहाड़ भी दिखाई दे रहे है।

ये चित्र फ़िटनेस क्लब का है वहा पे अं एक्सेर्सईस के इन्स्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रहे है। अं ऑरेंज कलर की मैट डाली--

वहा पे पत्थर दिखाई दे रहा है झरना दिखाई दे रहा है वहा पे पानी दिखाई दे रहे है।